इन चारों बगल वही सीढ़िया-उढ़िया बना हुआ है।

न वही लम्बा ऐसा है गेट उट में ना ग्रिल उरिल --